फोटो में एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रही है।

बाहर के कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे--

इस फोटो में काले रंग की कुर्सियां दिख रही हैं।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

ऊपर सफेद रंग के पर्दे चढ़े हुए हैं।

नीचे फरस भी हो रहा और इसमें एक डस्टबिन दिख रही--

दुकान के ऊपर एक पोस्टर लग रहा--

जिसपर आर जे लिखा हुआ है और एल_जी भी लिख रहा --

और इसमें सूरज भी दिख रहा है।

और इसमें नीचे फर्श भी हो रहा है।

पीछे बहुत सारी दुकानें दिख रही है।

और आदमी और औरत भी दिख रही है।

और इसमें नीचे एक सफेद रंग का बिछा हुआ है।

इनमें कुछ डब्बे रखे हुए हैं।

पीछे कुछ कुत्ते भी पड़े हुए हैं।

इस फोटो में आसमान दिख रहा है।

और उसने कड़ा भी पहन रखा है।

पीछे पीले रंग के गुब्बारे भी हैं।

और उसके ऊपर लगी हुई दिख रही है।

इस फोटो में एक गेट दिख रहा--

कुछ को ब्लर नहीं किया हुआ हैं।

इस फोटो में छत के पंखे दिख रहे हैं।

नीचे फर्श भी किया हुआ है।

इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें हल्की सी सूरज की चांदना भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें बैग भी दिख रहे है।

एक नाव में दो आदमी बैठे हुए हैं।

पानी में हल्की हल्की लहरें भी नजर आ रही है।

और इसमें बेले भी दिखाई दे रही है।

नीचे फरस भी किया हुआ है।

और पेन ड्राइव भी रखी हुई है।

कुछ गमले भी दिखाई दे रही हैं।

बीच ग्राउंड में तंबू भी लगा हुआ है।

यह फोटो एक ग्राउंड का है।

नीचे कुछ ईंटें बिछी हुई है।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

और हल्का सा आसमान भी दिख रहा है।

और जिसमें हल्की-हल्की घास उगी हुई है।

इसमें एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक लाग़ली का पत्ता भी दिखाई दे रहा है।

पार्क में हल्की-हल्की घास भी है।

इस फोटो में एक बड़ा मकान दिख रहा है।

जिस पर कुछ लड़ियाँ टंगी हुई है।

और साइड में कुछ मकान भी दिख रही हैं।

और एक मकान में शीशे का गेट लगा हुआ है।

इसमें लाल रंग की कुर्सी भी दिख रही है।

यह फोटो किसी धार्मिक स्थान का है।

और सड़क पर एक रस्सी भी पड़ी हुई है।

इस फोटो में दो कुर्सी दिख रही हैं।

छत पर पंखे लगे हुए है।

और इसमें एक ट्रैक्टर के पिछले पहिए भी पड़े हुए हैं।

इसमें एक साइकिल भी खड़ी हुई दिख रही है।

और सड़क के दोनों और कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

और वह कुछ काम कर रही है।